हमें जयदेव दिखाई दे रहा है और होटल का नाम द राजस्थान हेरिटेज होटल है।

पौधे भी लगाए गए हैं यह बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है मूर्ति बहुत ही ज्यादा सुंदर है।

एक मसल्स बोहोत ज्यादा दिखाई दे रही है।

और यहां पर बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है।

यहां रखी गई है जो की चार पांच तरह की कुर्सियां रखी गई--

यहां पर इस फोटो में एक पंखा भी लगा हुआ है सफेद कलर का बल्ब टंगा हुआ है

बहुत सारे हैं।

बोहत अछि तरह दिखाई दे रहे है यहां पे बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे है।

कारे दो कारे दिखाई दे री है एक कार का कलर --

प्लास्टिक की बाल्टी है वो और एक उसके साथ में एक लोहे की बाल्टी भी रखी हुई है।

इस फोटो में हमें एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जिसमें--

और बहोत सारी तरह की ब्रांड की बोतलें रखी हुई है यहां पर बहुत सारी बोतलें रखी गई हैं।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

दो दो तरह की बाल्टी भी रखी हुई है एक रेड कलर की और एक सफेद कलर --